काफी हरियाली नज़र आ रहा है और मस्त भी --

में गाड़ियां फोर व्हीलर बहुत सारी गाड़ियां पार होता हैं इसमें ।

और इस बिल्डिंग में काफी पेंटिंग अच्छा किया है।

सब देखने में हरियाली नजर कुछ अलग ही देखने में --